और पास में पानी की भरी बाल्टी रखी है और उसके पास में एक आदमी बैठा हुआ है। गाड़ी के पीछे कुछ नंबर प्लेट्स दिए हुए हैं। पास में कूड़ा कचरा पड़ा है।

यह बहुत बड़ी साइकिल की दुकान है। साइकिल की दुकान में एक लड़का साइकिल की दुकान में बैठा हुआ है।

रो-रोड खाली प्लेन है।

उसके पास में एक बिल्डिंग बनी हुई है।

क पीछे काँच की कांच की गेट लगी है। गेट के अंदर दुकान है। दुकान में कुर्सी रखी हुई है। कुछ बोटल रखी है। चिप्स के पैकेट बाहर टंगे हुए --

यह एक गार्डन है। गार्डन में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं। गार्डन के ऊपर सफेद रंग की एक रोड है।

यह एक इंटर कॉलेज है इंटर कॉलेज में बाहर बहूत सी लड़कियाँ टहल रही है।

दूसरे बच्चे के हाथ में भी फावड़ा है एक औरत ने छा-छाता लगा रखा है और बहुत से आदमी खड़े हुए है एक आदमी ने सफ़ेद रंग का --

यह एक बोहोत बड़ा मेला है। मेले में दो बड़े पुतले खड़े हुए हैं। बहोत तेज़ की आग जल रही हैं।

और म माइक लगे हुए हैं। बहोत भीड़ है। बहोत आदमी खड़े हुए टहल रहे हैं। कुछ आदमियों के हाथ में फोन से फोटो खीच रहे है।

यहाँ पर एक बहोत (बहुत) बड़ा फ़ौव्हारा (फव्वारा) चल रहा है। फ़ौव्हारे (फव्वारे) के आस-पास बहोत (बहुत) से आदमीऔरत खड़े हुए हैं।

यह एक पार्क है। पार्क में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो अ सबके हाथों में कॉपी किता कॉपी हैं। ड्राइंग बना रहे हैं।